और बैंगनी रंग की एक बोहोत ही सुंदर सी पर्दा लगी हुई है।

और एक एक तुलसी का छोटा सा पौधा रखा --

गुब्बारे लगे हुए हैं। पीछे तीन महिलाएं खड़ी हुई हैं। उस --

एक टीचर खड़ी हुई हैं और एक बच्ची --

यहाँ पर ये कोई पुराना महल जैसा है जो कि बाद में होटल में बदल दिया गया है। इसके बाहर एक सफेद रंग की --

ये कोई किसी एडवरटाइजिंग एजेंसीज का --

महावीर की बोहोत बड़ी मूर्ति लगी हुई है जिसके ऊपर --

ताल तार इतने सारे हैं कि मकड़ी की जाल की तरह --

ये किसी दुकान की फोटो है जहाँ पर बोहोत सारी राखियाँ --

दिखाई दे रहें हैं इसमें तीन-चार लोग नहा रहें हैं। पानी में ।

यहाँ पर ये कोई गैराज है जहाँ पर --